वॉल का कलर भी ब्लू से पेंट किया गया है और पिलर्स का कलर रेड है।

और सामने में एक कार्टून जोकि पूरा पैक है एक दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई दे रहा है जैसे रेड कलर का वायर जा रहा है।

रूम में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि जिम में आगे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है।

और सामने में दो चेयर भी दिखाई दे रहा है जो कि लोहा से बना है।

ये फोटो में मुझे छत ढलाई करते समय का फोटो दिखाई दे रहा है।

और आदमी भी दिखाई दे रहा है।

आगे बहोत सारा घर दिखाई दे रहा है।

वाला पिक्चर में दो आदमी सोफा में बैठकर है और दोनों का फेस ब्लर करके है।

और उसका साइड साइड में बहोत सारा पत्थर और बहोत सारा पेड़ सब लगा हुआ है।